आर देख सकते हैं यह स्टील का है मतलब एहने बनाने में भी मेहनत लगता है जो बनाते हैं वही जानता होगा लेकिन देख के लगता है की यहाँ मेहनत वाला काम है और यह भी एक कला ही है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा-अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है व्हाइट कलर दिया गया है बहुत सुंदर लग रहा है देखने में |

आपने तो सुना ही होगा भक्ति में शक्ति है तो यहीं आ गये हम लोग मंदिर में और आप जानते ही है मंदिर में काफी भीड़ होता है।